इस चित्र मे सड़क दिखाई दे रही है सामने नीला आसमान हरे भरे पेड़ सामने की तरफ बहुत सुंदर लग रही--

चित्र मे अह चित्र में एक नि ए-अह- सफ़ेद रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है सामने की तरफ पे एक गाड़ी दिखाई दे रही है पीछे की तरफ हरे पेड़ दिख रहे है नीचे की तरफ भी कुछ गड़िया खड़ी नजर आ रही है।